एक रोड गया है जिसपे काफी बच्चे जा रहे है कुछ आदमी जा रहे है एक फोर व्हीलर भी खड़ी है ।

पर्पल कलर का शॉल लिए हुए है और स्वेटर पहने है जो कि इस बस के बगल से जा रहे --

यहाँ पर हम सब देख पा रहे हैं की हम लोग एक मेले में हैं और जहाँ बच्चे ऊपर से स्लाइडिंग कर रहे हैं।

रैक अच्छे से सिस्टमेटिक रखा गया है बड़े-बड़े कार्टून भी है वहाँ पे।

मंदिर पर चढ़ने के लियें और अअअ म मिट्टी भी दिखाई दे रही है बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है आसमान भी --